पूरा आगे में सबसे आगे बड़ा पेपर रखे हुए हैं जो की यहाँ पर एक गन भी रखी हुई हैं जिससे फ़ो --

यहाँ पे एक बोर्ड भी लगे हुए हैं जोकि देखने मे बहुत ही अच्छी लगता है।

यहाँ पे ये म चक्का भी है जोके देखने मे बोहोत ही अच्छा लगता है मोटरसाइकिल भी है टेंपो पे यहा पे सामान लग रहे है बोहोत ही अच्छा देखने मे लग रहा है काफी सुंदर।

और यहाँ पे तीन चार आदमी खड़े हो रहे हैं दिखने मे बहोत ही अच्छा खड़ा हो रहे --

यहाँ पे हम देख सकते हैं बहोत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं देखने में बहोत ही अच्छा लगता है काफी सुन्दर है।

जोकि दिखने में बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। नीचे में घास उगे हैं और साइड में पेड़- पौधे हैं जोकि हरे भरे हैं।